और इस होटल में लाइट और टेबल दिख रहे हैं.

यह एक रासन दुकान है.

यह मस्जिद के ऊपर साउंड बॉक्स लगा हुआ हे.

और यहां पर एक कलम दिख रहे हैं.

और यहां बड़ा जहाज दिख रहा है.

और इसके ऊपर खजूर गुड लिखा हुआ है.

यह एक मोल है।

और यहां एक दूल्हा भी बैठा हुआ है.

इसमें बोहोत सारे पेन टंगे हुई हे.

इसमें सेवन अप का बोर्ड लगा हुआ है.

यह एक पार्क है इस पा --

पार्क में बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं.

और बाहर मे दो हेलोजन जल रहे हे.

यहां बहुत सारे घर हैं.

और यह सब पाइप के लोहे खड़े हैं.

इसमें बोहोत सारे कुर्सियां दिख रही हे दिवाल मे बोहोत सारे फोटो चिपके हुई हे ।